फॉर टुडे स्पेशल इसमें अलग अलग चीज लिखी हुई हैं।

ये रोहतक के पी_जी_आई का ऑफिस का फोटो है जिसमें एक आदमी बैठा टेबल पर अ कुर्सी पर बैठा हुआ है बेंचेज पे और वेट कर रहा है।